ई तो बहुत अच्छा लग रहा है बहु लग रहा है बहुत बड़ा स्कूल है ई उजला कलर का दो मंजिल का स्कूल है और बगल में एकदम फील्ड भी देखते है बहुत ही कच्चियें है अभी।

बढ़िया चर्च लग रहा है इतना लाजवाब चर्च लग रहा है नीचा पीला है ऊपर से एकदम एक मंजिल को छोड के आ दु मंजिला अ इसके ऊपर बादल लगा हुआ है नीला कलर का भी बालद बादल देख रहे है इधर --

सफेद मे भी बा-बादल दिख रहे हैं सामने पार्क जैसा है इतना अच्छा व्यवस्था हम देख रहे है ये एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा --